एक बड़ा सा मैदानी क्षेत्र जहां कुछ एक बड़ा मकान है। मकान के सामने बैठने के लिए कुर्सी हैं। आस-पास कुछ शो पत्तियां रखी गई हैं। म मकान के सामने एक बड़ा सा पेड़ है।

एक सफेद की मूर्ति जिसे एक उम मंदिर में बिठाया गया है मु-मूर्ति के ऊपर एक चांदी का छता लगा हुआ है।

दुकान में कांच का दरवाजा लगा है यहां कुछ लाइटे लगी हुई हैं।

झील मे एक खंभा गड़ा हुआ है।

झील के किनारे कुछ पेड़ पौधे एवं कुछ बिजली के खम्भे है। झील के किनारे एक घास का मैदान है।

एक तलाब है। तलाब के किनारे कुछ मकान और कुछ मन्दिर स्थित है।

इसकी परछाई तलाप में आ रही है।

एक दुकान जिसमें कुछ कपड़े रखे गए हैं। दुकान में लाल पीले हरे लाल एवं काले रंग के कपड़े रखे गए हैं।

बाजार पेड़ों के नीचे लगा हुआ है। बाजार में कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक बाइक पड़ी है।

मार्केट में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

बाज़ार के बीच रास्ते में कुछ कुर्सियाँ लगायी गयी हैं कुछ डिब्बे रखे गए हैं।